स्टेज में हर तरफ लाइटे लगी हुई हैं।

बड़े-बड़े पेड़ पौधे और बीच में एक झरना भी है जो बंद हैं।

नदी के किनारे कुछ बोट खड़े हैं।